यहाँ पर चेयर डली हैं बड़ी सी यंहा मेज है कुर्सिंया हैं एक शीशे का शो केस धरा है।

यहाँ शादी का समारोह चल रहा है वाइट रंग की कुर्सियां बिछी हुई हैं बहुत सारी।

लंबी चौड़ी सड़क है उसके बगल में एक ऊँची सी बिल्डिंग है तीन मंजिल --

ये बहुत बड़ी नहर है। ये गहरी है। इसके ऊपर बहुत बड़ा पुल बना हुआ है।

दो पेड़ खड़े हैं सूखे से एक बड़ा सा पेड़ हरा भरा खण्डंजा बिछा है ईंटो का मोटे-मोटे पत्थर पड़े हैं।

यहाँ फेस्टिवल चल रहा है दो आदमी एक सोफे पे बैठे हैं। बड़ा सा सोफा है रेड रंग का।

पिलर खड़े हुए है बड़े-बड़े पत्थरों के कमरे बने हैं दिखने में बहुत सुन्दर है चित्रकारी --

ये छोटा सा बैंक ऑफ़ बड़ौदा है। यहां पे एक बोर्ड पे बैंक ऑफ़ बड़ौदा लिखा हुआ है सहज जन सेवा केंद्र एक आदमी बैठा हुआ है लैपटॉप चला रहा है।

ये गेरू रंग से पेंट कर रखा है। ये बहुत ही सुन्दर लग रहा है इसके आगे दो पेड़ हैं।